मुझे नजर आ रहा है। यहां एक बड़ी गैलरी है।

बनी हुए है ये मल्टीकलर का है मां काली का मूर्ती बहोत ही सुन् --

यहां ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ है।

एक आदमी अपना बेचते नजर आ रहा है।

मैं देख पा रही हूं यह एक बड़ा सा बरामदा है।